इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे लाइट की सजावट दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा क्रॉस --

इस फोटो में मुझे फूलों की दुकान दिखाई दे रही है।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

तेल के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे काउंटर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कांच की खिड़की दिख--

इस फोटो में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे आटो दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे--

इस फोटो में मुझे बिजली के खंबे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।